और एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है।

जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक है।

जो की खाना सर्व करने के लिए खड़ा है।

जिनका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है।

जो की रास्त्र भारती पब्लिक स्कूल में हो रहा है।

यह क्षेत्र एक श्रृंगार दुकान है।

जिनका कलर ग्रीन व्हाइट पर्पल ब्ल्यू रेड है।

जिसमें बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं।